सामने एक सफेद मेज है जिसमें बॉटल चमचे और डिस्पोजल कप रखे है।

पीछे हरी भरी खेत और पेड़ दिख रहे हैं।

और पीछे एक खुला दरवाजा भी दिख रहा है।

एक मोटरसाइकिल भी सड़क पर खड़ी दिख रही है।

तस्वीर को देखकर यह लग रहा है कि इस औरत ने नया ईरिक्शा खरीदा है जो लाल रंग का है।

ये एक ऊंचा उठाया गया घर है जो लकड़ी से बना है और नीचे खुला स्थान है।

घर के सामने एक लंबी रेलिंग और बरांडा है जिसमें चलने का जगह है।

नीचे लकड़ी की पट्टिया लगी है जो टेंपरेरी सपोर्ट के लिए होती है।

एक बड़ा खिड़की है जहां एक व्यक्ति कुछ लेना या देने लग रहा है।

ऊपर एक सफेद छत का कवर है जो अंदर धूप या बारिश से बचाने के लिए लगा है।

सामने सफेद और नीले रंग की बड़ी स्लाइड देख रही है।

पीछे एक छोटी झोपड़ी दिख रही है।

पीछे कई बड़े बड़े पेड़ है जो हरियाली बढ़ा रही है।

दूसरी तरफ एक बड़ा पानी का शॉट और सुंदर दृश्य है।

पीछे दिख रही है छोटी छोटी पहाड़ियां।

सड़क के किनारे पर रेत और मिट्टी का ढेर जमा हुआ है।

पूरा एरिया हरे भरे पेड़ पौधो और घास से घिरा हुआ है।

दाएं तरफ एक पलंग है जिसमें लाल और सफेद चेक वाला कंबल है और भूरे रंग का तकिया है।

शीशे पर लिखा है निम सलून ।

एक व्यक्ति दुकान के बाहर खड़ा है जो कैजुअल कपड़ों में है।

पीछे का आसमान बिल्कुल अंधेरा है।